कुछ बच्चे कुर्सी बिछाकर बैठे हुए हैं और कुछ गेम खेल रहे हैं।

छोटे छोटे गुब्बारे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक मेंज दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक बोतल रखी हुई है।

और उसंकी रिपोर्ट चेक कर रही है डॉक्टर के हाथ में एक पेन दिखाई दे रहा है।

जिसके सामने एक पीला सा डंडा गेट बंद करने वाला भी दिखाई दे रहा है।